और चार बोरियां रखी दिखाई दे रही हैं।

सामने एक बड़ा सा मैदान बना है।

एक लोहे का खंबा है जिस पर लाइट लगी है।

इसमें लोहे के बहोत सारे डम्बल रखे दिखाई दे रहे है।

और उसमें ए_सी लगे दिख रहे हैं।

बाहर कुर्सियां रखी हुई दिखाई दे रही है।

नीचे हरा कारपेट बिछा है।

एक बिजली का खंभा सामने लगा है।

ऊपर हरे कलर का पर्दा है।